हुआ है बहुत बड़ी से किया जाता है ।

इस विडियो में सामने ऐसा सैलून फूल ए.सी. --

और इस पर कंप्यूटर के कुछ अ अ की-बोर्ड की-बोर्ड रखा हुआ है और उस पर ऊँगली चला रही है ।

और उसके किनारे पे छायादार लगे हुए हैं।

इस विडियो में एक सड़क पर एक जगह कुछ लोग खड़े हुए--